उसमे इंजन मे लगा हुआ हैं दुसरी नाव रखी है उसमे व्यक्ति हैं एक व्यक्ति लाठि लिये खडा हुआ है।

यहाँ पर भी हमे सैलून कटिंग वाली एक दुकान नजर आ रही है क्योंकि काँच भी वहाँ पर लगा हुआ है और बहोत सारी कुर्सीया भी रखी हुईं हैं।

यहाँ पर हमे एक लंबी चौड़ी बहुत ही ऊंची बिल्डिंग बनी दिखाई दे रही है जिस पर ये लीखा हुआ है महाविद्यालय ये शायद विद्यालय है।

-- और विद्यालय के ऊपर जाने के लिए सीडी भी लगी हुई हैं बगल मे एक पेड़ भी लगा हुआ है लइट लगी हुई है और उसकी बिल्डिंग की खिड़किया भी लगी दिख रही हैं और नीचे का गेट खुला खुला हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर का बंद है।